और एक बीच में पिलर है जो की ब्लैक रंग का है उस पे--

यहां बहुत सारे शॉप दिखाई दे रही है जिनके आगे जय श्री टिब्बर मूड हार्डवेयर लिखा हुआ है।

और आसपास में कुछ घर दिखाई दे रहे हैं एक घर पर व्हाइट कलर का पेंट किया हुआ है और बाहर एक स्कूटी खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

यह एक शॉप है जिसके अंदर ऊपर कुछ पाइपे पड़ी है प्लास्टिक की और कुछ सीमेंट के गट्टे पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक स्कूटी खड़ी है और एक कूलर लगा हुआ है और एक बोर्ड पर डॉक्टर पंकज टांटिया लिखा हुआ है।

मोटरसाइकिल खड़ा है और इसके गेट के अंदर कांच लगे हुए हैं और बाहर पेड़ियों पर कुछ जुत्ते खोले हुए हैं।

यह एक शॉप है जिसके अंदर फुटबॉल और जूते रखे हुए है जो की स्टैंड बना हुआ है उसपे रखे हुए --

पशु घूम रहे हैं डंडे हैं और आसपास में कुछ हरे भरे पेड़ और कुछ सूखे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।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

यह एक शॉप है जिसके अंदर बहोत सारे मोबाइल फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक समान रखा हुआ है जिसके अंदर कुछ बुफर्स और --

और आसपास में एक दो चेयर पड़ी है और अलमारी पे एक सफेद पर्दा लगा हुआ है लाइट जल रही है और एक --

गाड़ी खड़ी है वाइट कलर की और बहोत बड़ा टावर है और आसपास में बहोत सारी बिल्डिंगे भी हैं और एक नीम का पेड़ है जिसके ऊपर--

इसकी खिड़कियों में कुछ पर्दे लगे हुए हैं व्हाइट कलर के और कुछ--

यह एक मस्जिद की तस्वीर है जिसके आगे एक झूमर टंगा हुआ दिखाई दे रहा है जिसके अंदर लाइटें जग रही है।

और कुछ बच्चे आस पास में खेल रहे है और दो बंदे थ्रेसर के पास खड़े हैं और थ्रेसर का रंग लाल है।

ये इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप है इसके ऊपर कुछ लाइटें भी हुई है और एक बाइक वाला तेल भी भरा रहा है एक बंदा तेल भर रहा है और आसपास में --

और एक इधर साइड में बिश्नोई ढाबा बना हुआ है जिसके अंदर खाने की बहुत सी सुविधा उपलब्ध है और बाहर दो बाइक खड़ी दिखाई दे रही है।

और गाने चल रहे हैं और बहु--

यह हीरालाल होटल की तस्वीर है जिसके आगे बोर्ड पर होटल हीरालाल लिखा हुआ है और बाहर एक सरनेटर पड़ा हुआ है इसके अंदर जाने के लिए --

कुछ टमाटर हैं गाजर हैं गोभी है पत्ता गोभी है केले लटक रहे हैं आसपास में बहुत सारे दुकान हैं और बैंक भी हैं।

यहां पर एक पेड़ है जो की नीम का है और हरा भरा है और उसकी पत्तियां दिखाई दे रही है।

और आस पास में बहोत सी शॉप है और कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं जो कि हरे भरे है और उनकी पत्तियां दिखाई दे रही है।